उसमें छोटे-छोटे पेड़-पौधे हैं दूरी पर पहार नजर आता है अकाश साफ है।

इस तस्वीर में नजर आ रहे हैं एक मार्केट का बहुत बड़ा यह शोरूम है इसमें तरह तरह की।

स्पष्ट रूप से दिखाई नहीं दे रहे हैं और कालीन जो है हरा टाइप --